उन्हें भी देख लीजिए और आप देख काफी भीड़ भी है और काफी सुंदर-सुंदर मछलियाँ है देख ने में भी अच्छी लग रही है और काफी बड़ा भी है और कई प्रकार के मछलियाँ है।

और बहोत सारा पेड़ भी लगाया हुआ है और कुछ व्यक्ति हैं जो आए हैं घूमने और ये जगह है घूमने का और काफी बड़ा है और काफी अच्छा लग रहा है देखने में ।